एवं बड़ी- बड़ी खिड़कियाँ है उनमे काँच लगे हुए है जाली लगी हुई है पंखे लगे हुए है।

यहाँ रोड पर बहोत सारी बसे खड़ी हुई है बाइक खड़ी हुई है कुछ लोग खड़े हुए है आस-पास बिल्डिंगे है।

यहाँ पे एक पक्षी है पक्षी नीले और सफेद रंग का है पक्षी की चोंच लाल है पक्षी जमीन पे --

यहाँ पे बहुत सारी साइकिले रखी है कुछ लोग खड़े हुए है आगे कुछ घर बने हुए है खम्भे लगे हुए है खंभों में डोरिया लगी हुई है।

गोदी में एक पेपर रखा हुआ है आस-पास ब्रेनचे रखी हुई है ब्रेनचो पे लॅपटॉप रखा हुआ है कुर्सिया रखी हुई है।

यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है बोर्ड लगे हुए है।

कुछ गेट लगे हुए है बड़े-बड़े खम्बे लगे हुए है।

यहाँ पे ये टेबल है उसपे पर्दा बिछा हुआ है एक प्लेट रखी हुई हैं उसमें एक कांच का बाउल रखा हुआ है बाउल में आइसक्रीम रखी हुई है।